मेज दिखाई दे रही है मेज पर खाने का सामान रखा हुआ है।

यह एक कार का शोरूम है।

अउर इस स्कूल में बहुत सारे कमरे दिखाई दे रहे हैं।

इस फंक्शन में बहुत सारी गाड़ियां है।

और ये भी दिखाई दे रहा है आसमान नीला दिखाई दे रहा है।